यहाँ पे बाजार लगा हुआ हैं मछली बिक रहा हैं बहोत सारा मछली हैं। है।

यहाँ पर देख रहे है नदी है बहुत बड़ा और वहां पे कोई पेड़ कोई पौधा भी है उस पे एक गमछा भी लाल कलर का लटकाया हुआ है हरा कलर का बांधा हुआ है।

यहाँ पे हम देख रहे हैं की बहुत सारा बे एच.डी.एस.पी बैंक है जिसको एच.डी.एस.पी बैंक बोला जाता है यहाँ बहुत सारा बाइक भी लगा --

एक रूम है उस टेबल पे रखा हुआ है।